यह पर एक है। वहा कार राखी हुए है। बहुत सारी बाहर लाइट्स के कांबे लागे हुए हैं।

ऊपर आसमान है।

सामने शोरूम बना हुआ है। कुछ कार्य रखी हुई है। लोग खड़े हुए हैं।